यह हॉस्पिटल है और यह हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और यह --

जिम सेंटर में एक गुब्बारा भी र --

और इस रूम में ई-रिक्शा लगा करके और ई-रिक्शा का दोनों तरफ से --

यहां पर झंडा तोलन हो रहा है यहां पर --

जिससे इसी गेट से क्रॉस करते हैं बाराती लोग।

यह रोड है और यह रोड देखने में बहुत ही अच्छा रोड है ।